यह एक चित्र है इसमें बड़ा बंगला दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत से लोग दिख रहे हैं।

यह एक चित्र है इसमें एक रूम है तकिए व बेड भी रखा हुआ नजर आ रहा है।

यह एक चित्र है इसमें एक डी मार्ट दिख रहा है जिसमें बहुत से मसाले दिख रहे हैं।

यह एक चित्र में है इसमें बड़ा सा रेस्टोरेंट दिख रहा है कुछ पेड़ पौधे भी है।

ये है एक चित्र है इसमें कुछ लोग दिख रहे हैं कुछ घर दिख रहे हैं और पेड़ भी दिख रहे हैं।

ये एक चित्र है इसमें कुछ गाय दिख रही हैं उनके चार पैर भी हैं और बहुत सारी गाय है।

यह एक चित्र है इसमें कुछ लोग दिख रहे हैं गाड़िया भी दिख रही है।

यह एक चित्र है इसमें सोफे टेबल कुर्सियां दिख रही हैं ब्लैक बोर्ड भी दिख रहा है।

यह एक चित्र है इसमें कुछ लोग दिख रहे हैं सब्जियां भी दिखाई दे रही है।

येह एक चित्र हैं इसमें बहोत बड़ा सुंदर खन दिख रहा है और बहोत बड़े-बड़े पेड़ भी --

यह एक चित्र है इसमें बहुत बड़ा मंदिर दिख रहा है बहुत सी सदके दिख रही हैं।

दिख रही है और बहुत सारी ज्वेलरी भी--

येह एक चित्र है इसमें टमाटर मिर्ची भिंडी दिख रही है ये सब्जी का ठेला है।

यह एक चित्र है इसमें बहुत से लोग दिख रहे हैं आसपास बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें दिख रही है।

इसमें बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है।

और बहोत से बेड भी रखे हुए हैं और बहोत से लोग भी दिख रहे हैं।